इस चित्र में एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जहाँ पर एक झंडा लगा हुआ है रास्ता दिख रहा है आसमान दिख रहा है।

इस चित्र में एक मझार दिखाई दे रही है जो हरे कलर से पुती हुई है मजार के बाहर सितारे बने हुए है एक बड़ी घड़ी लगी हुई है।

जिस पर एक बोर्ड लगा हुआ है एल अकैडमी का वो एक स्टडी सेंटर है।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

आसमान दिख रहा है फर्श दिख रहा है घास दिख रही है।